बिल्डिंग के ऊपर कांच की खिड़कियां भी बनी हुई है बिल्डिंग के ऊपर --

सीढ़ियां भी बनी हुई दिख रही हैं उसपे कुछ --

पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

एक रेस्टोरेंट के अंदर टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं।

एक दुकान इसके अंदर दिख रही है जिसमें काउंटर के साथ --

गुलाबी और सफेद कलर का डेकोरेशन इसमें दिख रहा है एक --

इस सड़क पे एक आदमी कैमरा लगा के कुछ देख रहा है।

एक जगह के गेट पे फूलों का सजावट भी हो रखी है।

बाहर एक नीले कलर का कारपेट भी रखा हुआ है।

कुर्सी के ऊपर एक्सपर्ट फिटनेस का बोर्ड भी लगा हुआ है।

रेस्टोरेंट के अंदर दीवार के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं।

एक कमरे के अंदर जिम की बहोत सारी मशीने भी लगी हुई है।

एक आदमी जिम में लेट के एक्सरसाइज भी --

एक बड़ा कांच का गेट भी बाहर इसमें लगा हुआ है।

दीवार पे नीले कलर के पेंट में डिजाइन भी बना हुआ --